घर है और बीच में एक मैदान दिखाई दे रहा है और जोकि --

एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है। इस हॉल में लाल रंग की कारपेट बिछी हुई है और फोर सीलिंग में --

आ कुर्ता धोती पहन रखा है और साइड में फूलों --

पिक्चर लगी हुई है और उस दुकान के सामने एक मा मोटर साइकिल --

एक खंभा लगा हुआ है बिजली का उसमें तारे दिखाई दे रही है तारों के बीचों-बीच --

हमने दिए गए इमेज में हमें एक स्टेज में --

दिए गए इमेज में हमें एक जगह हरे रंग का कार्पेट बिछा हुआ है। उस कार्पेट के ऊपर दो --

दिए गए इमेज में हमें एक घना-सा जंगल दिखाई दे रहा है औ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उस जंगल के --

आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले और बैंगनी कलर में दिखाई दे रहे हैं।